इस इमेज में एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस इमेज में बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बहोत अच्छी सजावट हो रही है।

पौधे के गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक ऑफिस नजर आ रहा है।

इसमें भण्डारी हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है।

इस में बहोत से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस इमेज में एक गणेश जी का मंदिर दिखाई दे रहा है।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

हरी हरी बहोत सुंदर घास भी लगी हुई है।

उसमें बहोत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।